यह पांडेय डेयरी फार्म है जहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और दूध से बनी हुई सामान भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ बहु--

सुन्दर-सुन्दर अ वस्तुएं भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर महामाया डेयरी --

उस साइड में भी बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है जो पक्के की दिख रहे है और घर के सामने मे इट भी दिखाई दे रहे है और स्कूटी भी दिखाई दे रहे है |

सफेद रंग का दिखाई दे रहा है और उसके सामने में एक सड़क भी दिखाई दे रहा है और ये सुनसान दिख रहा है।

और नदी के अगल -बगल में बहुत सारे पेड़ -पौधे दिख रहे है और छोटे -छोटे घास भी दिखाई दे रहे है और नदी के उस पार में एक छोटा सा--